ईहां पे दूर-दूर तर पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है।

और पीछे बल्ला है। बल्ला पड़े हुए हैं। अ कोई रहे हैं ।

और दूर-दूर तक अंधेरा दिख रहा है यहां लग रहा है कुछ प्रोग्राम है।